एक वाइट कलर का एक है वाइट कलर का जो मोटिफाइव कराया गया है बगल में है जो है अभी --

मम ब्लैक वाइट कलर का शर्ट पहना है एक ने हरे कलर का बैग टांगा हुआ है और एक ने चेक वाला शर्ट पहना हुआ है जो बाहर खड़े हैं तीनों लाइन में --

एक्शन जो काफी अमेजिंग है काफी अच्छे हैं।

ऊपर काफी बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं वहाँ पे एक चीज भी लगा हुआ है नीचे काफी सारे बोर्ड बन करके --

लाल मिर्ची वहां पे आदि भी है गोभी भी है वहां पे दो तीन व्यक्ति अपने सामान को--

पीछे येलो कलर का दो टेंपल है पीछे ग्राउंड जो खेलने वाला ग्राउंड है वहाँ पे --

हम देख रहे हैं दोनों बंदे पे बैठे हुए हैं।

यहाँ पे काउंटर है दो कुर्सियाँ है काउंटर के ऊपर एक लैपटॉप से एच_पी का --

ये किसी महाराजे का घर है जहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण के सब रखे हुए हैं यहाँ पे तलवार अलवार ये सब रखे हैं यहाँ पे बेड भी है बगल में दो --

पीछे वो ताड़ का पेड़ भी है और उसके भी नीचे है वो ब्लैक कलर के पन्नी क के मिट्टी में रखा हुआ है।

यहां पे एक लड़की है और एक औरत है पीछे बहोत सारे गार्ड है जो खड़े हुए हैं।

यानी बगल में भी एक लड़की है वो भी वाइट कलर की लहंगा पहनी हुई है।

और वहाँ पे एक नाव है नाव के ऊपर एक गोला सा --

टायर जैसा है वहाँ पे एक आदमी है जो स्टोन पे बैठा हुआ है।

एक दुर्गा जी का फोटो है जय माँ सरस्वती और यहाँ पे एक बस से बस का गेट खिला --

दो तीन या चार का पिक्चर है नीचे टाइल जैसा लगा है पीछे --

यहा पे एक लाइब्रेरी है जिसको सारी कुर्सियां लगाए हुए हैं।

यह एक बस स्टैंड में जिसमें हम बहोत पीछे एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमियों का भीर है जिसमें एक व्यक्ति ने --

कॉर्नर का ये नाम रखा हुआ है जिसके पीछे दो व्यक्ति हैं।

नीचे पातीला है या भोज बनने के लिए टंगे हुए अंदर काफी मात्रा में भीड़ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारे टेबल एंड कुर्सियाँ है सामने एक कार है और स्कूटी भी है बगल में काफी फोटो है।

एंड ऊपर एक एक छोटा सा फैन है साइड में एक और घरी भी है।